सुंदर है और बहुत ही ज्यादा सजावटी है।

और ये रोड साइड घर है।

बना रहै हैं जिसमें से ग्रीन कलर की रंगोली ग्रीन और रेड कलर की रंगोली बनाने के लिए ये लोग --

जो ग्रीन कलर की मकान है जो और व्यक्ति रेड कल सस व्हाइट रेड का शर्ट आ शू पहना --

सुंदर है और यह एक मतलब डन पूरा फील्डव है जो सब में पत्थर ही है।